जो लाल कलर के कपड़े पे रखी हुई है सामने एक क्रेटर भी रखी हुई है।

पीछे की तरफ एक ट्रक खड़ा हुआ है ओर पीछे दो टीन आदमी भी खड़े हुए है ओर यह इंजीनियर ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए है।